ये फोटो में मुझे एक शॉप दिख रही है जिसका नाम है फ्लावर एंड लव --

साइड में दो डस्टबिंस लगे हुए हैं पूरा पेट्रोल पंप को ब्लू पतरे से छप धका--

ने इंडिकेटर पे ट्रेन लगी है और साथ में ट्रेन का नंबर लगा है बहुत सारे--

अ इसका नाम है बोर्ड पर बैनर के नाम लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए कल--

पीछे ब्लू शर्ट में एक आदमी ऑलरेडी खड़ा हुआ है और राइट साइड में एक ब्लैक कलर की--

आगे उन्होंने एक डबल वगैरह में सब रखा हुआ है नीचे पेस्ट्रीज रखी हुई है।

कोर्ट है बास्केट बॉल कोट लग रहा है क्योंकि इसमें नीचे सारी लाइनिंग लगाई हुई है बॉर्डर बनाई हुई है पूरा--

साथी में तीन लोग है जो अपनी अकेले में चर्चा कर रहे हैं।

येलो शर्ट में एक आदमी खड़ा है जो कुछ अपना काम कर रहा है।

जो अप्रोच कर रही है वो प्लेटफॉर्म पे है और--

लेडीज भी दिख रही है और वो लेफ्ट साइड में बैठी है वो लोगने एक सर्कल सेमी सर्कल जैसा पूरा बना के रखे हैं।

पानी बेह रहा है नदी नहीं है वो पर सारा पानी बेहता जा रहा है पूरी ग्रीनरी वॉटरफॉल जैसा लग रा हैं।

कपड़े लगे हुए हैं बाकी के सारे भी स्टूडेंट्स उनके अपने ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म में है।